ये एक हारमोनियम की पिक्चर है हारमोनियम पे हम बहोत सारे गीत गा सकते हैं।

और यहां बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं।

और ये बहोत छोटी सी पोस्ट ऑफिस है पर यहां पे काम सारे ही हो जाते हैं यहां पे हम खाता भी खुला सकते हैं पोस्ट ऑफिस में --

और ग्रीन टी शर्ट वाले बच्चे हार रहे हैं।

यहां पर इस पिक्चर में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्क्रब और क्लीन करने का --

एक पोस्ट ऑफिस है जहां पे बोहोत सारी स्टंप्स एनवेलप्स और पार्सल्स भेज सकते हैं।

और ये बहोत छोटी सी पोस्ट ऑफिस है पर यहां पे काम सारे ही हो जाते है यहां पे हम खाता भी खुला सकते है पोस्ट ऑफिस में।